एक बड़ा तालाब दिखाई दे रहा है। ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है जो कि हल्के नीले कलर का और ऑरेंज कलर का नजर आ रहा है।

यहाँ कुछ पुतले दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने कुछ कैप पहनी हुई है नारंगी पर्पल हरी पीली नीली इत्यादि कलर की।

यहां बहुत सारे मग दिखाई दे रहे हैं कुछ पे लाल और काली डिजाइन बनी है कुछ नारंगी कलर के है कुछ कलरफुल दिखाई दे रहे है।

ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है कुछ ईमारत दिखाई दे रही है घर दिखाई दे रहा है खिड़की दिखाई दे रही हैऊपर आसमान दिखाई दे रहा है।

पेपर दिखाई दे रहा है और टोकरियाँ भी नजर आ रही है जो कि लाल और नीली दिखाई दे रही हैं।

यहाँ आधे एक पुतले बने हुए हैं तीन तीनों ने ट्रेडिशनल कपड़े पहने हुए हैं एक ने लाल नीले हरे कलर के कपड़े पहने हुए हैं ऊपर एक पोस्टर लगा हुआ है।